और वाला झुलवा लगा हुआ है और ये बच्चा लोग घूम रहे हैं और ये ब्रेक डांस झूलवा भी है इसमें।

बोतल है पर्दा है और शीशा है।

और कुर्सी है और पीछे अथी पर्दा है।

रोड पार कर रहे हैं एक लड़का और बड़ा-सा एक पेड़ है और ऑटो खड़ा है।

एक बड़ा-सा घर है। एक और उस घर के ऊपर एक घड़ी लगा हुआ है बड़ा-सा और उसमे पेंट है रेड कलर का।